एक बड़ा-सा मैदान है। मैदान में बहोत से घांसें हैं। बगल मे एक बड़ा-सा मकान है जिसमे काम चल रहा है।

एक बड़ा-सा मैदान है मैदान में बहुत-सी घासे हैं कचरे फैले है घासों का रंग हरा-भरा है एक बड़ा-सा कॉलेज है जो की लंबाई काफी लंबा है।

जिनमें बहुत सी मिठाइयाँ रखी हुई है बगल में एक कॉफी बनाने का एक मशीन है टेबल कुर्सियां रखी है दीवाले भी पोस्टर वाली हैं लाईटे लगी हुई हैं नीचे टाइलस --

ए अंदर एक दो पेड़े लगे हैं जो की हरे भरें हैं बाहर एक कुत्ता है अंदर बड़ा सा मकान है जो की दो मंजिल है का है आकाश का रंग नीला है।

एक रास्ता हैं। रास्ते के बगल मे एक बड़ा सा मोल बन रहा है। जो कि एक बड़ा सा मकान हैं। उसके ईटे दिख रहे हैं। रोडे दिख रहे हैं। एक बड़ा सा पोस्टर लगा हैं।

टेबल है कुर्सी है बोर्डे लगीं हैं। नीचे टाइल्स लगे हैं । सामने के साइड एक अक मकान हैं।

बगल में एक और छोटा सा मकान है एम एस सर्विस सेंटर ( लाईटें लगी है पेड़ पौधे हैं जोकि हरे भरे हैं आ काश का रंग नीला है।